यह तस्वीर में एक बड़ा सा पहाड़ है। जिसमें कुछ लोग चढ़ रहे हैं। कुछ लोग चढ़ कर ऊपर खड़े हैं।

इस तस्वीर में यह लग रहा है कि यहां एक खूबसूरत सा ग्राउंड है जहां के सामने में छोटा सा --